इसके आस पास हरे भरे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है।

और एक बड़ासा गेट दिखाई दे रहा हैं जिसके ऊपर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है।

ट्वेल्वथ का एक स्कूल नजर आ रहा है।

लगी हुई दिख रही है यहां पर दो ब्ल्यू --

बहोत ही खुले खुले वातावरण में बना हुआ है।

यह एक घर की फोटो है इस घर में अंदर की तरफ से व्हाइट कलर किया हुआ दिख रहा है।

लेडीज वियर की शॉप दिखाई दे रही है।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

दोपहर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

साइकिल लेकर उस पर बैठा हुआ दिख रहा है।

यह डी_जे गाड़ी एक गली में पार्क की हुई नजर आ रही है।

यहाँ पर हमें एक जिम दिख रही है इस जिम को --

यहां पर हमें एक घर दिख रहा है यहां पर नाइट व्यू दिखाया गया है।

ऊपर से डेकोरेट करके सजाया गया है।

और इस पर धूप आई हुई नजर आ रही है।

जिस पर की एस_बी_आई व्हाइट वर्ड से लिखा हुआ है।

यह व्यक्ति इस झरने के नीचे नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

और दो चार्जिंग ऑटो यहाँ खड़ी हुई दिख रही है जिस पर की ऑरेंज कलर के हार डाले हुए हैं।